यह एक रोड है रोड में लड़का खड़ा है और वहाँ पे उसके जस्ट नीचे में बहुत सारे खेत हैं जिसमें फसल लगा है।

यह छोटा सा खरगोश का बच्चा है जो घास चर रहा है और यहां एक आदमी का पै-पैर है दोनों साइड में जो खरगोश को देख रहा है वो छोटे-छोटे घासों को चर रहा है।

लोग चढ के नाचते हैं और साइड में डीजे भी लगा है।